यह दुकान मिठाई और के क्स की है।

यह एक घर बना हुआ है जो बाहर से फूलों से और अशोका के पत्ते से सजाया गया है।

ये एक घर जैसा और ऑफिस जैसा लग रहा है जो यस बैंक पंजाब बैंक का ऑफिस बना हुआ है बोर्ड लगे हुए हैं।

जिसमें आगे चार मीनार खड़ी हैं।

और खाने की कई चीजे मिलती है।

यह एक सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है जहाँ --

और चारों तरफ उद्यान वाटिका है इसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है जो सुनहरे कलर का है।

यह एक हॉल बना हुआ है जिसमें दो टेबल्स लगी हुई है लंबी वाली और उनके पास चेयर लगी हुई है।

फिसलपट्टियां और झूले लगे हुए हैं यहां चारों तरफ हरियाली हो रही है।

इसमें टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

जिसमें काफी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है नीचे एक पानी का --

यह कोई दर्शनीय स्थल है जहाँ पे बाहर के साइड --

यह कोई घर बन हुआ है जिसके ऊपर पानी की टंकियां रखी हुई है और बाहर गाड़िया खड़ी हुई है।

जो बंद है और इसके बाहर सड़क बनी हुई है जिसपे गाड़ियां खड़ी हुई है।

इन्हें ख़रीदने के लिए आते हैं।

यह एक मंदिर है यहां पे लोग पूजा करने आते हैं यह मंदिर राधा कृष्ण जी का --

ठाकुर जी के मंदिर को बहुत ही अच्छे रूप से सजाया गया है इसके बाहर दान पत्र भी लगा हुआ --

यह एक हाईवे है और ऊपर बिल्डिंग बनी हुई नीचे से रोड है जिसमें --

और लोग अपने साधनों के द्वारा जा रहें--